और सामने यहां पे गेट लगा हुआ है कांच का गेट लगा हुआ है ऊपर ए_सी लगी हुई है।

यह एक मार्केट है मार्केट तो यहां पे काफी सारी शॉपे है और रास्ते से एक लेडी जा रही है एक स लेडी वहां बैठी हुई--

यह पार्क है यहां पे काफी बड़ा पेड़ एक लगा हुआ है और पार्क में काफी लोग हैं यहां ये--

यहां पे एक बिल्डिंग बनी हुई है दो बिल्डिंग बनी हुई है एक पीछे और एक थोड़ा आगे बनी हुई है जिसमें पीछे वाली में बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है।

और बाहर इसमें छोटी वाली जुगनू वाली लाइट से--

यह होटल रूम लग रहा है जिसमें बहोत अच्छा बेड यहां पे रखा हुआ हैं और बेड के बगल में स्टूल टेबल रखी हुई है।

गाय भैंस पाली जा रही है और एक पेड़ है यहां पे पीछे साइड घर भी बना हुआ है।

यहां पे एक आदमी रास्ता है दोनों साइड पार्क ही पार्क है एक आदमी।

और काफी छोटे पौधे भी दिख रहे है यहां पे--

ये ड्रम रखे हुए हैं और ऊपर एक झाश लगा हुआ है।

डांस करती हुई नजर आ रही है पूरा पूरा दिख रही है एक थोड़ा सा दिख रही है।

पौधे उगाए हैं खास भी है यहां पे--

यहां पे किसी चीज के पौधे हैं जो खाने वाली सब्जियों के लग रहे हैं।

यहां पे का एक से दो लोग बैठे हुए हैं और एक दो लोग खड़े हुए हैं।

और यहां पर एक दो मशीन भी है जो मशीन रखी गई है।

यहां पे जिम करने वाले सारे सामान यहां पे रखे हुए हैं छोटे बड़े ऐसे जिम सेंटर बहुत बड़ा जिम सेंटर यहां पे लग रहा है।

यहां पे जिम कराया जाता है इसके बहुत सारा समान भी यहां बहुत सारी मशीनें भी यहां पे रखी हुई हैं जिम करने वाली।

बोहोत सारे लोग भी हैं और सामने एक वेयर हाउस जैसा दिख रहा टीन शेड का घर बना हुआ और पेड़ पौधे भी है।

और अगलबगल भी बने हुए हैं घर वर जैसे दिख रहे हैं पेड़ हैं।

और पेड़ के नीचे छोटी सी घास हुई ऊगी हुई है यहां पे मैदान भी है थोड़ा बहुत।

यहां पे काफी लाइटिंग वगैरह की गई है जो कि कलरफूल वाली लाइटिंग लगी हुई है फैन भी लगा हुआ है ऊपर।